एंड बेड भी बहोत ही अच्छे कलर का है साथ में डस्टबिन भी रखा हुआ और सारी फैसेलिटीज इसमें शो हो रही है और साथ में एल_ई_डी भी लगी हुई है। अंदर--

और यहां पर रिचार्ज भी होता है साइड में कवर्स भी रखे हुए हैं तो यहां पर कर भी बेचे जाते हैं और मोबाइल भी बेचे जाते हैं और सारे टाइप के मोबाइल से रखे हुए यहां पे और एक दीवाल के पास स्लिप बनी हुई है उसमें मोबाइल्स रखे हुए सारे।

पिक्चर्स में एक गुलदस्ता या तो रेड कलर के फ्लावर दिखाए गए है जिसमें जिसको हम बुग्गे भी बोलते है फ्लावर के बुग्गे भी बनते है रेड कलर के ये रोज रेड है और शायद किसीने पकड़ा हुआ है इस रो-रोज रेड को।

यह फार्महाऊस पीछे की तरफ फर्शी भी रखी हुई है और ये पेड़ पोधे उगे है शायद आम का पेड़ उग रहा है पीछे की तरफ घास भी है नीचे मिट्टी भी है कंकड़ भी है।

इस इमेज हम देख पा रहे हे की दो मैकेनिकल इंजीनियर हे शायद जो दो आदमी खड़े हुवे हे और ऊपर कार टंगी हुवी हे पीछे भी एक और कार हे।

इसमें हम देख सकते हैकी कोई गार्डन हैये या तो बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैयेलो कलर के व्हाइट और भी बहुत सारे कॉलर के रेड कॉलर के --

और सामने की तरफ बिल्डिंग बानी हुई हैं आ शायद यहाँ पे लोग गुमने आते होंगे या तो कोई जंगल में है या तो किसी चीज़ की मंदिर हो सकता हैं ये और पेड़ पौधे बी लगे हैं।